एक तिरंगा है मैदान में एक वयक्ति खड़े हुएं हैं मैदान में महारानी लक्ष्मी बाई की घोड़े पर सवार--

ये बाहर एक गेट लगा हुआ है। गेट के ऊपर--

यह एक फार्मेसी है फार्मेसी में एक वयक्ति बैठे हुए दिखाई गए हैं।

इस तस्वीर में एक बसस्टैंड दिखाई दे रहा है। बसस्टैंड में कुछ ऑटो खड़े हुए है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट की टेबल दिखाई दे रही है टेबल के ऊपर चार प्लेटे लगाई गई है प्लेटो में--

यहाँ श सड़क के किनारे काफी सारी दुकाने दिखाई दे रही है। बीच रोड में काफी सारे लोगो की भीड़ दिखाई दे रही है।